यह एक बहुत ही हमें अच्छा सा इमे दिखाया गया है यह इमेज एक गाड़ी का है जो बंद पड़ी है यह गाड़ी बहुत ही अच्छी और सुन्दर दिखने में है।

यहाँ लोग बहुत दूर दूर से पढने के लिए आते हैं बच्चे लोग यहाँ बहुत ही अच्छी विश्वविद्यालय नालंदा में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ बहुत ही कम दामो में पढ़ाया जाता है ।